सामने हमारे एक बगिया दिख रही है इस बगिया मे काफी हर बड़े पेड़-पौधे हैं काफी फूल लगे हुए हैं काफी बड़ी संख्या में यहाँ माने घूम रहे है तथा काफी सारे नरयल के पेड़ भी हैं।